यहां कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं सामने कुछ लकड़ि पड़ी दिखाई दे रही है बोरियां पड़ी दिखाई दे रही है भैस बंधी हुई दिखाई दे रही है।

रेस्टोरेन्ट दिखाई दे रहा है सामने कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रही है टेबल दिखाई दे रही है टेबल पर काले और लाल रंग की पट्टी भी दिखाई दे रही है एक मोबाईल --

रखा हुआ है प्लेट रखे हुए दिखाई दे रहे है काँच के लग रहे और दिखाई दे रहे है गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे है पंखा दिखाई दे रहा है।